और वहाँ पे पेड़-पौधे भी लगे ह --

एक बेंच दिख रही है। उस पर बहोत बड़ी-बड़ी प्लेटे दिख रही हैं।

येलो कलर की टी-शर्ट पहने हुए कुछ सामान रखा ह --